इसके ऊपर लिखा हुआ है श्री बद्रीनाथ जी और उसके ऊपर कई सारे अच्छे-अच्छे डिजाइन किए गए हैं जिसमें सभी ल --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है यह घर बहौत ही सुन्दर है घर के बाहर --

जिसमें कुछ बाइक एक बुलेट है और कई सारी --

कई सारी लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है ग्राउंड बिलकुल साफ एवं हरीली दिखाई दे रही --

कई सारे बड़े-बड़े बिल्डिंगे बनी हुए हैं घर के बाहर कुछ हरे पेड़-पौधे एवं छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं कुछ झाड़ियाँ --

कुर्सियाँ के ऊपर एक प्लास्टिक लगी हुई है और सफेद रंग की है और इस कमरे में कई काँच के खिड़कियाँ हैं और इसमें एक सफेद रंग की लाइट जलती हुई दिखाई --

इसे घेरा गया है अल पास में एक कुर्सियां लगाई गई हैं और इसके छुट पास में कई सारी बिल्डिंगे बनी हुई है और बिल्डिंग सफेद रंग की है।

इंडिगो की है और दूसरी प्लैन एयर इंडिया की है इसके पास में एक महिला खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यह कुर्सियां लोहे की बनी हुई है और इसके पास में एक बड़ा-बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है इस पहाड़ के ऊपर बड़ी से बड़ी छोटी-छोटी पेड़ पौधे ब --

बनिकी शाह विद्यालय है और इसके बाहार एक पेड़ है लगी हुई है और इस विद्यालय के ऊपर एक टैंक लगाया गया है यह टैंक --

यहाँ पर घर के बाहर एक बोर्ड लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है विद्या इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी उसके बाहर कई सारी --